यहाँ पे सारा पेड़ हैं पेड़ पौधे हैं ऐसे लग रहा हैं जू का घर हैं।

लग तो रहा हैं जिम ही हैं।

हमरा काज रहे कुछ खराब हो गई हैं ।